tables और आकृतियों के इस tutorial में आप सबका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हमारे दो उद्देश्य है पहला है यह समझाना के टैब्यूलर परिवेश का प्रयोग कर टेबल्स कैसे बनाए
दूसरा उद्देश्य है के टेबल परिवेश का इस्तेमाल कर लेटेक डाक्यूमेंट्स को टेबल्स में कैसे शामिल करे
यही तरीका इस्तेमाल कर सकते है आकृति को शामिल करने के लिए
हमने देखा है के कैसे टाइटल याने शीर्षक पेज बनाए इसमें टाइटल है लेखक की जानकारी क्रिएटिव कॉमन्स कॉपीराइट की जानकारी ये सब समीकरण वाले ट्यूटोरियल में समझाया गया था
आज की तारीख आखरी कॉलम दिखाई दे रहे है जोकि इस कमांड द्वारा बनी है
अगले पेज पर चलते है
अब मैं यह टेबल क्रमशः कैसे बनाना है यह समझाऊँगी
एक साफ स्लेट से शुरुवात करते है मैं इन कमांड्स को डिलीट करती हूँ
संकलन करती हूँ और साफ स्लेट से शुरू करती हूँ
बिगिन टैब्यूलर और एंड टैब्यूलर के इस्तेमाल से टैब्यूलर परिवेश को बनाया जाता है मैं इसे यहाँ करती हूँ
बिगिन टैब्यूलर के पास ब्रेसेस के भीतर जो r r अक्षर है वोह बताता है के यहाँ दो कॉलम्स है तथा वो दाईं ओर संरेखित है
पहली लाइन में जो एंट्रीज़ है मांगो और मिक्स्ड दो रिवर्स स्लैश अगली लाइन का संकेत देता है
मैं अगली लाइन को एन्टर करती हूँ
जैक्फ्रूट कोली हिल्स बनाना ग्रीन
अब मैं इस टैब्यूलर परिवेश का अंत करती हूँ संकलन करती हूँ ये यहाँ दिखाई दे रहा है
हमें 3 बाय 2 टेबल मिलता है यहाँ तीन रोव्स और दो कॉलम्स है
यह दो कॉलम्स राइट अलाइंड है याने के दाईं तरफ संरेखित है जो की r r अक्षर द्वारा स्पष्ट किया गया है
दो कॉलम को अलग करने के लिए हम संरेखित कॉलम अक्षरों के बीच में एक खड़ी लाइन दाखिल करते है
तो मैं यहाँ दाखिल करती हूँ सेव करती हूँ संकलन करे आप देख सकते है के खड़ी लाइन आई है
अगर अंत में भी आपको खड़ी लाइन चाहिए उचित जगह पर दाखिल कीजिये
मैं इन्हें दाखिल करती हूँ सेव करती हूँ और संकलन करती हूँ
तो ये यहाँ आ गए है
as में तो हम और खड़ी lines दाखिल कर सकते है
मैं एक और खड़ी लाइन शुरुवात में डालती हूँ आप देख सकते है के दूसरी लाइन आ गयी है
देखिए दो और खड़ी लाइन्स हम कुछ और अलग संरेखण की कोशिश करते है
यहाँ c लिखते है यह कहने के लिए के दूसरा कॉलम मध्य में संरेखित हो
अब ये मध्य में संरेखित है चलिए पहले कॉलम को बायी ओर संरेखित करते है
अभी तो यह दाई ओर संरेखित है मैं इसे बायी ओर संरेखित करती हूँ
l सेव करे संकलन करे अब ये बायी ओर संरेखित है
अब हम रोव्स को आडी लाइन्स द्वारा अलग करेंगे
चलिए यहाँ hline hलाइनडालते है देखते है ऐसा करने पर क्या होता है
यह ऊपर की लाइन डालता है अगर मैं यहाँ एक और hline डालती हूँ देखिए एक लाइन आ गयी है
मैं इसे पूरा करती हूँ यहाँ मुझे दो रिवर्स स्लैश के साथ एक ब्रेक लाइन देनी होगी और फिर hline
वाक्य के शुरुवात से hline शुरू होता है अब मैंने आडी लाइन्स पूरी की है
चलिए अब तीन और कॉलम्स और एक रोव जोड़ते है
इसलिए मैं यहाँ आती हूँ और c c r मैंने और तीन कॉलम्स जोड़ी है उनमें से पहले दो मध्य में संरेखित है और तीसरा वाला दाईं ओर संरेखित है
और फिर मुझे कहना है : फ्रूट टाइप नम्बर ऑफ यूनिट्स कोस्ट पर यूनिट कोस्ट रुपीज़ hलाइन
तो मिक्स्ड बीस पचहत्तर रूपए पंद्रह सौ रूपए
जैक्फ्रूट इनमें से दस पचास रूपए पाँच सौ रूपए
बनाना ग्रीन दस डज़न बीस रूपए प्रति डज़न और कुल दो सौ रूपए
चलिए देखते है की हम इसका संकलन कर सकते है या नहीं
तो इसने एक टेबल बनाया है दाईं ओर संरेखण की ज़रूरत को देखिए यह इसलिए ताकि हम नम्बर्स जोड़ सके
मान लीजिए के कॉलम को दो भाग में अलग करना है
उदाहरण के लिए यहाँ इन दो कॉलम्स में फ्रूट्स को विवरण है और इन तीन में कॉस्ट कैल्क्यूलेशन याने लागत गणना है
तो यह multi column command की मदद से किया जाता है मैं इस तरह से करती हूँ
मल्टी कॉलम दो लीजिए मध्य संरेखण फ्रूट विवरण
पहले दो पुरे होने पर अगली कॉलम के लिए मैं टैब डालूंगी
अगली लाइन पर जाइए मल्टीकॉलम याने बहुकॉलम तीन यह भी मध्य संरेखित होने चाहिए
ब्रेसेस के भीतर कॉस्ट कैल्क्यूलेशन स्लैश hलाइन तो हमें यह मिला है
पहले दो में टायटल याने के शीर्षक है फ्रूट डीटेल्स अगले तीन में टायटल है कॉस्ट कैल्क्यूलेशन
यहाँ खड़ी लाइन्स नहीं है क्यूंकि हमने लेटेक से ऐसा करने नहीं कहा है तो चलिए यह करते है
यहाँ हमें दो खड़ी लाइन्स चाहिए और यहाँ एक उसके पहले ही यहाँ पर एक लाइन है सो इसे मैं यहाँ डालती हूँ
देखिए क्या होता है अब खड़ी लाइन्स भी आ चुकी है
क्योंकि यह 2 और 3 एक ही अक्षर वाला तर्क है तो यह संभव है के हम उन्हें ब्रेसेस के बिना लिखे वही चीज़ काम करती है
कभी कभी कुछ कॉलम्स के बीच आडी लाइन्स बनाना ज़रूरी होता है हम उसे इस तरह से समझाते है
इस मैंगगो को अलग करती हूँ मिक्स्ड के बजाय इसे मालगोआ कहते है और फिर 18 किलोग्राम्स 50 किलोग्राम्स
मैं इसे डिलीट करती हूँऔर यहाँ मैं कहती हूँ के ये अलफानसो है
2 डज़न 300 रुपए प्रति डज़न और कुल पन्द्रह सौ
चलिए देखते है जब इसे सेव करते है तो क्या होता है संकलन करे
तो मुझे ये मिला है यहाँ यह हुआ है के यह लाइन यहाँ आई है और यहाँ भी और मैं ये औए ये नहीं चाहती
तो इसका ध्यान रखा जा सकता है यह कहकर के इस आडी लाइन के बजाय मुझे कॉलम 2 और 4 के बीच एक c लाइन चाहिए
तो मुझे इसे यहाँ करना चाहिए था चलिए फिर से इसे यहाँ वापस डालते है
hलाइन यहाँ cलाइन 2 टू 4ठीक है अब मेरे पास सिर्फ कॉलम 2 और 4 के बीच लाइन है
यह मध्य लाइन ने मैंगगोज़ को भारत के दो लोकप्रिय मैंगगोज़ में विभाजित किया है
हम इस टेबल को समाप्त करते है एक अंतिम रोव से इस तरह से जोड़ निकालते है
मल्टी कॉलम 4 दो खड़ी लाइन्स राईट अलाइंड याने दाईं ओर संरेखित वरटीकल सेपरेटर याने विभाजक टोटल कोस्ट रुपीस
इसे बंद करे अगला टैब 2200 hलाइन
अब हम यहाँ है तो यह टेबल था जिसके साथ हमने ट्यूटोरियल की शुरुवात की थी
टैब्यूलर परिवेश के प्रयोग से बनाए गए टेबल्स के साथ कैसे काम करे
लेटेक टैब्यूलर परिवेश द्वारा बनाए गए पुरे टेबल को एक ही वस्तु मानता है
उदाहरण के लिए अगर आप लिखोगे this is an example table याने यह एक उदाहरण टेबल है
अब क्या होता है के यह टेबल इन दोनों के बीच में आ जाता है यह एक उदाहरण है इग्ज़ैम्पल टेबल के लिए
यह टेबल चल रहे वाक्य में प्रकट होता है सेंटर परिवेश याने मध्य परिवेश के प्रयोग से टेबल को शामिल करना संभव है
एक और सामान्य रूप से टेबल परिवेश में इसे शामिल कर सकते है अब हम बताते है बिगिन टेबल इसे बंद करे
तो क्या होता है के this is an example table
यह वाक्य अलग से आता है और जो भी इस बिगिन और एंड टेबल के बीच प्रकट होता है उसे अलग से एक टेबल के रुप में रखा जाता है
दूसरे शब्दों में भले ही टेबल कुछ टेक्स्ट के बीच प्रतीत होता है लेकिन इसे अलग से रखा गया है
यह केंद्रित नहीं है हम यह कर सकते है के यहाँ कमांड दे सकते है centering
इसे डाक्यूमेन्ट के बीच में रखने के लिए
चलिए अब एक अनुशीर्षक याने के कैप्शन बनाते है टेबल कैप्शन टेबल के आगे डाला गया है
मैं यहाँ एक कैप्शन डालती हूँ caption – cost of fruits in india याने के अनुशीर्षक भारत में फलों के दाम
तो यहाँ कैप्शनआ गया है यह बहुत पास में है – मैं एक छोटी सी स्पेस याने जगह छोड़ना चाहूंगी
मैं ऐसा vspace command – 1 ex देकर करती हूँ यह x अक्षर के लिए जितनी जगह छोडी थी उतनी ही है
तो मैंने यह खड़ी स्पेस छोड़ दी है अब ये ठीक दिख रहा है
डिफॉल्ट रूप से लेटेक टेबल को पन्ने के उपरी हिस्से में रखता है ऐसा स्वचालित रूप से होता है
टेबल को अगले उपलब्ध स्लोट याने जगह पर प्रवाहित करते है इसे समझाने के लिए मैं डाक्यूमेन्ट में से कुछ टेक्स्ट को कट और पेस्ट करती हूँ
मैं इसे डिलीट करती हूँ ठीक है
अब यहाँ कुछ विवरण इन फ्रूट्स के बारे में दिया है
इसके उपरी हिस्से में जाए यहाँ पेस्ट करे संकलन करे
पहले जैसे टेबल पन्ने के ऊपर आया है
मैं इसमें कुछ और टेक्स्ट डालती हूँ चार प्रतियाँ
तो अब क्या हुआ है के यह टेबल दूसरे पन्ने पर चला गया है और यहाँ और कुछ नहीं है इसलिए यह पन्ने के मध्य भाग में आ गया है
मैं इसकी एक और प्रतिलिपि डालती हूँ और कुछ और टेक्स्ट भी
तो अब क्या हुआ है के यह टायटल पेज याने शीर्षक पेज है ये टेक्स्ट पेज है और टेबल इस पेज के उपरी हिस्से में चला गया है
समीकरणों के रूप से हम लेबल्स भी बना सकते है और उन्हें संदर्भित करने के लिए उपयोग कर सकते है
उदाहरण के लिए आप यह कमांड कैप्शन कमांड के नीचे दीजिए
आपको यह कमांड कैप्शन कमांड के नीचे देना है क्योंकि कैप्शन कमांड ही टेबल नम्बर बनाता है
उदाहरणतः यहाँ टेबल 1 अपने आप इस कैप्शन कमांड द्वारा बना है
अगर आप इसके बाद लेबल डालते है तो ये लेबल कैप्शन कमांड द्वारा बनाए गए नम्बर को संदर्भित करेगा
तो लेबल – फ्रूट्स मैं थोडा पीछे जाती हूँ और यह लाइन यहाँ जोड़ती हूँ
the cost of fruits is shown in table reference याने इन फ्रूट्स की कीमत संदर्भ टेबल में बताया है आपको इसे लेबल देना होगा यह उसी तरह होना चाहिए जैसे के – टैब फ्रूट्स
मैं संकलन करती हूँ अब इसे देखिए पहले संकलन पर यह वेरीयेबल सौंपा नहीं गया है
इसलिए मैं फिर से संकलन करती हूँ तो मुझे यह मिला है हम अपने आप से इल टेबल्स की सूची बना सकते है
जो अब हम समझा रहे है मेक टायटल के बाद मान लीजिए हमें यह टेबल्स की सूची चाहिए – listoftables एक ही शब्द में यह कमांड देना होगा
तो क्या हुआ है के इसने एक टेबल्स की सूची तैयार की है
विशिष्ट रूप से हमें दो बार संकलन करना होगा यह सुनिश्चित करने के लिए के टेबल नम्बर सही आए
ये यहाँ आया है इस सूची के अनुसार टेबल पेज दो में है लेकिन हमें पता है के यह पेज तीन पर है तो यह पेज तीन में है
तो चलिए वापस जाते है और एक और बार संकलन करते है तो आप देख सकते है यह पेज तीन में है
यह पहले समझाया गया है ठीक है यह इस भाग का अंत है जिसमें हमने टेबल्स को समझाया है
अब हम समझाएंगे के include graphicsइन्क्लूड ग्राफिक्स इस कमांड का इस्तेमाल करके आकृति याने फिगर्स को कैसे बनाए
इसके लिए हमें शामिल करना होगा इस पैकेज को graphicx
अब में इसके तल पर जाती हूँ और कहती हूँ यह कमांड इस प्रकार है बिगिन फिगर इन्क्लूड ग्राफिक्स विड्थ ईक्वल्स
मेरे पास iitbpdf नामक एक फाइल है
यह देखिए के मैंने इसे इस आकृति के विड्थ याने चौड़ाई के साथ शामिल किया है जो की इस लाइन विड्थ के बराबर आता है
मैं इस आकृति को समाप्त करती हूँ संकलन करे
तो आप देख सकते है के यह पेज के शुरुवात में आ गया है
मैं यह करती हूँ यह इसलिए है के अगर मुझे इस पुरे लाइन विड्थ का प्रयोग करना है तो
मान लीजिए मुझे इस्तेमाल करना है पॉइंट 5 जो है लाइन विड्थ का आधा और फिर उसे छोटा बनाया गया है
और ध्यान दीजिए के यह बाईं ओर संरेखित हुआ है और जैसे के टेबल में मैं कह सकती हूँ centering सेन्टरिंग जो की इसे मध्य में लाएगा
मैं अनुशीर्षक याने के कैप्शन भी बना सकती हूँ फिगर शामिल होने के बाद फिगर कैप्शन बनाते है
golden jubilee logo of iit bombay गोल्डन जूबली लोगो ऑफ आई आई टी बॉम्बे
पहले जैसे मैं लेबल बना सकती हूँ और उसका संदर्भ हम ref कमांड देकर कर सकते है
मैं इन फिगर्स की सूची को टेबल्स की सूची के साथ दर्शा सकती हूँ
मान लीजिये मुझे अगर फिगर्स की सूची चाहिए तो मैं इस संकलित करती हूँ
मैं दो बार संकलन करती हूँ और आप देख सकते है फिगर्स की सूची अपने आप आ गयी है
सारे फिगर के कैप्शन यहाँ दिखाई देंगे
एक आखरी चीज़ जो बतानी है है वोह है के कैसे इन फिगर्स को रोटेट याने के घुमा सकते है
यह ऐंगगल ऑप्शन द्वारा कर सकते है मान लीजिए के ऐंगगल 90 डिग्री तक घुमाना है
तो इस आकृति पर जाइए संकलन करते है
तो यह 90 डिग्री तक घुम चूका है इसे माइनस 90 तक घुमाए ठीक है
यहाँ मैं मान रही हूँ के iitbpdf उपलब्ध है अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके है
लेटेक के साथ शुरुवात करने वाले को स्रोत डाक्यूमेन्ट में होने वाले हर बदलाव के बाद संकलन करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए के जो भी उन्होंने एन्टर किया है सही है
इस ट्यूटोरियल को सुनने के लिए धन्यवाद मैं सकीना शेख आपसे आज्ञा लेती हूँ नमस्कार